घर है। घर- घर में एक काले कलर का गेट है। काले कलर का गेट बंद है। ऊपर साइड उसके बगल में एक मस्जिद है। मस्जिद बोहोत ऊंचा है।

एक ग्राउंड मे जे.सी.बी का जे.सी.बी खड़ी हुई है जे.सी.बी के अगल-बगल बहुत कचड़े हैं। घर घर मकान का काला रंग है।

पार्क है जो वाटर पार्क है पानी बहोत भरा हुआ है उसमे ए एक खिसलपटी है खिसलपटी पीले रंग का है एक बच्चा फिसलता है नहा रहा है अगल बगल हरे भरे पेड़ हैं।

ए का पौधा है। कुछ हरे कुछ पीले कुछ लाइटिंग कर रही हैं ये पौधे। जमीन में लगा हुआ है।